यह फोटो एक बहोत बड़े किचन की ली गई है इसमें एक किचन बनाया गया है जिसमें एक शेल्फ बनाई गई है शेल्फ के ऊपर एक सिंक --

लाया गया है और गैस चूल्हा भी लगाया गया है इसमें एक--

सामने में एक शीशे की खिड़की लगाई गई है और एक दरवाजा भी लगा हुआ है और दीवारों में आते-आते तक --

ये रेलिंग लगाई गई है और इसके अरे परे जंगल ही जंगल है जिसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं और इसमें कुछ लोग घूमने भी आए है।

सामने एक टेबल है टेबल के ऊपर भी इसने बहोत सारी किताबे रखी हैं और पेटिया भी रखी हुई हैं और इसने शेल्फो में भी बहोत सारी किताबें बेचने के लिए भी रखी हुई हैं।

दुकान में एक ट्यूबलाइट जलाई गई हैं।

कुछ समझा रहा है ये इसमें पिलर भी खड़े किए गए हैं और--

लोग जगह हर टेबल पे खाना खाने बैठे हुए हैं और इसके अंदर रोशनी ही रोशनी आ रहीं है।

यह इसमें लाइटे जलाई गई है साइडों में और--

यह फोटो एक पूरे मैदान की बनाई गई है इस मैदान में कुछ लोग खेल रहे हैं और पीछे बिल्डिंग बनी हुई है।

इसके अरे परे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और आसमान दिखाई दे रहा है।

वो दुकान सड़क किनारे लगाई गई है और यहां बहुत सारी लाइटें भी जलाई गई है।

आसमान दिखाई दे रहा है जिसमें लाल रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं और हरे भरे इसमें बहुत सारा व्यू दिखाई दे रहा है।

अंदर भी कुछ लाइटें लगी हुई हैं इसके--

यह फोटो एक छोटी सी फोटो ली हुई है इसके अंदर अह टी कप बेचने के लिए रखे गए हैं और जो कि--